सारा सिम रोड सा दिख रहा है ब ब बहु बहोत लम्बा चौड़ा रोड दिख रहा है बहाँ पर कुछ कारें भी दिख रही है बहाँ पर वाइट कलर की कारें दिख रहीं है बहाँ पर कुछ फीमेल भी दिख रही कुछ मेल भी दिख रहे है वो --

बिल्ला में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बेरोली मैं काला काला रोड पर कई प्रकार का पेंट भी डला हुआ देखो पेड़ भी दिख रहे हरे-भरे दिख रहे है कुछ ब्लैक भी दिख रहे है बहुत सारे फीमेल दिख रहे है मतलब मेल के जगह मुझे बच्चे भी साथ में नज़र --